ये चित्र मा जी हम देख सगदौं कि हमतें यखम कई सारी सीढ़िन दिखेणी ज्युं मा जी हमतें कई लोग बैठ्यां दिखेणा पारम हमतें बणा दिखेण लग्यां जख मा जी कोई भ्वांमन बैठ्यां।

वे मंदिर पर हमतें अलग-अलग तरह की आकृतिन बणाई दिखेणी त उंडे फुंडे हमतें कई डालान दिखेण लग्यां सामणी पर हमतें एक नंदी बैला बणाई दिखेण लगीं।

ये चित्र मा जी हम देख सक्दु की हम तें यखम खूब बड़ी सोसाइटी करा दिखेण लग्युं जख माँ जी हम तें अलग अलग बालकनी दिखेणी कांच का शीशा भी दिखेणा।